यहां पर बच्चों के पीने की दवाईयां और च्यवनप्राश हनी प्राश वगैरह यहां पैंपर्स हम--

यहां हम देख सकते हैं कि छठ पूजा चल रही है।

और काफी भीड़ यहां पर नजर--

यहां हम देख सकते है की--

यहां पर छोटे छोटे बच्चे आदमी और दो औरतें साड़ी में खड़ी हुई हैं।

यहां पर एक बाइक भी खड़ी है।

यहाँ हम देख सकते हैं कि यह एक कपड़े की दुकान है।

यहां पर आदमी औरतों की बहोत भीड़ है।

भगवान जी की मूर्तियाँ भीं हैं।

काले रंग की प्लेट में यह डाले हुए हैं।

यहां हम देख सकते हैं कि यह एक कमरा है।

और आसमान में बादल और पहाड़ दिख रहे हैं।

टेट इंस्टिट्यूट ऑफ़ हेल्थ फैमिली एंड वेल्थ लिखा हुआ है।